यह घर दिखाई दे रहा है और यहां पर काले रंग का गेट दिखाई दे रहा है।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

और एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है और टेंट भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर बोहोत सारी कुर्सि भी दिखाई दे रही हैं और कुर्सियों का रंग काला दिखाई दे रहा --

यहां लकड़ी की मेज भी दिखाई दे रही है।

और जे ग्रिल भी दिखाई दे रही है और काले रंग का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर पानी भी दिखाई दे रहा है।

कुछ का मुंह नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ के मास्क भी दिखाई दे रहे हैं।

और बैग भी दिखाई दे रही हैं और कुछ चिप्स भी दिखाई दे रही हैं।

एक होटल दिखाई दे रहा है यहां पर कांच की मेज भी दिखाई दे रही है।

और थमला भी दिखाई दे रहा है और पंखे भी है।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

और इसका मुंह नहीं दिखाई दे रहा है।